यहाँ पे बांसों के बने हुए बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और यह बांस के सामान लोग अपने हाथ से बनाते हैं ।

इस मैदान में बहुत हरे-हरे घास है। यह मैदान देखने में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे तरह-तरह का खेल का आयोजन होता है।

यहाँ पे रोज सुबह शाम बच्चे खेलने आते है काफी भीड़ होती है।

और यहाँ से लोग मछलियाँ खरीदना पसंद करते है यहाँ पे रोज ताज़ी मछलियाँ लाई जाती है।

रेलवे स्टेशनों के बाहर बस स्टैंडो के बाहर और टैम्पू स्टैंडो में दिखती है।

गांव में टमाटर की खेती किसान लोग करते है और उपज और जब टमाटर फड़ता है तो उसे --